यहाँ एक दुकान है। दुकान के अंदर बोहोत सारी चीज है। किताबे पीछे रखी है। एक आदमी खड़े हुए हैं कितब लेने के लिए और कैरम बोर्ड भी है मैट भी है गेंद भी है बोहोत सारे फोटो भी है।

सब कोई अपने चीज लाया पूजा करने के लिए जैसे केला कटारी लौटा भी है सूप भी है बहोत सारे चीजें --

यहां एक ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लड़के हैं जो कि खेल रहे है फुटबॉल और भी बहुत सारे लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं बैठे हैं बहुत सारे घर भी है बाउंड्री भी बनाए गए हैं और साइड मे पेड़ भी है।